पीछे बहोत सारा घर है एक दो लेडी है एक बहोत सारा ग्राउंड है बहोत सारा पेड़ है स्विमिंग पूल है एक चेयर है।

ईयर है किताब का दुकान है जिसमे कैलेंडर है तीन आदमी एक ओरत है आदमी हैलमेट पहना हुआ है।

एक बूंद दूकान का नाम बुक सेंटर स्टेशनरी है दूकान के आगे एक बोर्ड रखा हुआ है।

दो तिन पोधे है यहा टाइल्स लगा हुआ है जब रेस्ट्रों बहोत बड़िया है।

मिड ए लडकी है लकड़ी के बगल में पे ए कुर्सी रखे हुआ है ए बहुत बढ़िया है।

हाँ गाडी ठीक होता है गाडी तीन चार आदमी ठीक कर रहे है एक गाडी हवा में लटका हुआ है।

और गाड़ी ठीक कर रहा आदमी ये बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं।

यहाँ एक पेट्रोल यहाँ एक पेट्रोल पम्प है यहाँ गाड़ीयाँ पेट्रोल भराती है पर कुछ यहाँ कुछ पैर पौधे है यहाँ पॉलुशन चेक भी होता है यहाँ नीला कलर का डस्टबिन है।

यहा एक पेट्रोल पंप का बोर्ड है बोर्ड के पास एक दूकान है दूकान--

और यहा पीछे भी बोहोत सारे पोधे है टाइल्स का गार्डन बना हुआ है।

या एक गुरु दुआरा है गुरु दुआरे में बहोत सारे लाइटे लगी हुई है।

या बू कुछ आदमी है या पर डस्टबिन रखे हुए है एक आदमी हरा कलर का शर्ट पेहेन कर--

यह कॉफ़ी रेस्टोरेंट है यहा वो सारी कॉफ़ी रखे हुए है या सीसा का अ--

ये एक ब्राउन कलर की दीवाल है या बोहोत सारी लाइटे लगे हुए है ये बाहर पेड़ पोधे अ पोधे रखे--

पौधे भी हैं पौ सीढ़ी सीढ़ी है सीढ़ी के नीचे--

येह एक दूकान है दूकान में खाने के समान है।

यह एक मंदिर है यह मंदिर साउथ में है।

यह एक पंडाल है पंडाल बहुत सुंदर है यहां कुछ--

मुर्तिया भी बहुत सुन्दर है यहा कुछ आदमी है।

यह एक जिम है जिम में कुछ आदमी हैं आदमी जिम कर रहा है एक आदमी--

बैंक के बाहर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं बैंक बहुत साफ सुथरा दिख रहा है।

मुझे टाइल्स के दीवाल दिख रहे हैं। दीवाल के पीछे पेड़ है।

बिल्डिंग के आस पास पेड़ पौधे गार्डन क्रिकेट का मैदान नेसकैफ़े का चाय कॉफ़ी पीने वाला है यहाँ कुछ गाड़ियाँ भी हैं।

बोहोत सारे पेड़ पौधे है गार्डन के पीछे घर है घर बोहोत सुन्दर है और नीला आसमान है।

घर के बगल में घर है घर के बाहर कार रखी हुई है और मोटरसाइकिल भी है कुछ पेड़ पौधे हैं नीला आसमान है।

कुछ यहां कुछ आदमी है बाइक रखे हुए है ये डाक घर बहुत साफ सुधरा दिख रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट साफ़ सुथरा दिखरा है यहा कुछ चेयर --